अतः सैलून के अंदर में बहुत सी कुर्सियाँ लगी दिख रही है जिसके सामने काँच लगे हुए है।

दो बछड़ा दिख रहा है जो की सफेद रंग का नजर आ रहा।

कुर्सियां दिख रही है जो की बैठने के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है।

बहुत बड़ा घर दिख रहा है जो कि बनता हुआ नजर आ रहा है उस पे अभी सीमेंट लगी हुई दिख रही है वहां पे हमे कुछ --

वह फव्वारा ऊपर तक जा रहा है तथा उस के आस-पास लोग खड़े हुए --

मैदान के तरफ बहुत से पेड़ लगे दिख रहें हैं जोकि हरे कलर के नज़र आ रहें हैं।

उसके आगे बहोत से रिबन बने हुए दिखाई दे रही है जोकि --

कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तथा वो --